साथ ही पार्क के मैदान मैं विशाल पेड़ और जमीन में घास लगे हुए हैं।

इंडियन बँक का एक सरकारी कार्यलाई जहा पे लोग इंतजार कर रहे हैं।